पर्पल कलर की टेबलो पे सॉस और उसकी बोटले --

वहाँ पर बड़ी-बड़ी मालाएं लगी हुई हैं --

फिश पॉट दिख रहे कुछ झूले दिख रहे लकड़ी के और यहाँ पर कोई बहुत सारे पंछी जानवर सभी चीजे दिख रही है |

अ अ खिड़की दिख रही है दरवाजे दिख रही है पानी की हरे कलर की टंकी दिख रही है छेत पे।

ये एकता का प्रतिक दिखा रहे | पीछे पेड़ दिख रही है ।

टेबल है डस्टर दिख रहे हैं।

और नीचे भी हरियाली छोटी-छोटी ये हरी-हरी कारपेट जैस बिछा हुआ --

नीचे हरी-हरी घास जैसा दिख रहे हैं।

और बहोत आइट साइड में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।